बहोत सारे सामान दिखाई दे रहा है बहोत अक्षर में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे रस्सी दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहोत सारे लोग झूले हुए हैं।

एक स्कूटी दिखाई दे रहा है और एक घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर अल्बेस्टर लगा हुआ है एक खंभा दिखाई दे रहा है जिसमें लाइन के वायर्स हैं।

यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा हैं जो व्हाइट कलर का घर बहोत पुराना दिखाई दे रहा हैं घर के सामने एक गेट दिखाई दे रहा हैं खिड़की दिखाई दे रहा हैं जो खुला हुआ हैं।

यहां पे मुझे एक बड़ासा जगह दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे जंगल है बहुत सारे बगीचे दिखाई दे रहे हैं पौधे दिखाई दे रहे है छोटे छोटे।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहा पत्ते दिखाई दे रहे है कचरे दिखाई दे रहे है बगीचा दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा--

बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रहा सामने में एक मेन दरवाजा दिखाई दे रहा जो बहोत बड़ा सामने में बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा--

कॉलेज दिखाई दे रहा है सामने में एक पेड़ दिखाई दे रहा गमला दिखाई दे रहा सामान दिखाई--

बाइक दिखाई दे रहा है सीढ़ी सीढ़ी दिखाई दे रहा है रूम में लाइट जलते हुए दिखाई दे रहा है दुकान के बगल में एक और दुकान दिखाई दे रहा जिसमें पति ऑटो सेल लिखा हुआ है जिसमें एक आदमी खड़ा हैं।

सोफा लगा हुआ है इसको पूरा सजाया गया है पीछे पर्दे दिखाई दे रहे हैं फूल दिखाई दे रहे हैं फूल रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं रंगीन लाइट दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सामने में बहोत बड़ा थिएटर दिखाई दे रहा है जिसमें व्हाइट कलर का सामने में पर्दा लगा हुआ है रेड कलर का बहुत सारे छोटे छोटे लाइट दिखाई दे रही है।